यह एक पार्क है यहां बहुत सारे पौधे हैं पेड़ है बहुत सारे खंभे हैं यहां रोड भी है।

इन लो गो को सजाया गया है कथक--

यहां बोटल रखा हुआ है पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह एक फ़्ला फ्लैट है जहाँ योगा के चित्र लगे है ओम के चित्र बने है हार्ट बना है।

कुछ घास फूस है दूसरा व्यक्ति चल रहा है।

एक ड्रम है दो तीन गाड़ियाँ है एक पेड़ है दो तीन व्यक्ति है।

चिड़िया का दुकान है यहां बहुत सारे चिड़ियाए हैं।

यहां सोना बेचा जाता है यहां बहुत सारी लाइट्स हैं बहुत सारी कुर्सी है।

आजू बाजू में दुकान हैं दो गाड़ियाँ हैं कुछ पौधे लगे हुए हैं।

एक टेबल है कैमरे भी लगे हुए--

दीए रखाए गए हैं चांदी के--